टेबल पे बोतल टिशू होल्डर और एक लगेज रखा हुआ है टेबल के नीचे और ये आदमी के हाथ में फोन है ।

और गिलासिस यहां पे रखे हुए हैं।

टेबल का शीट ब्राउन कलर है ।

और यहां पे कुछ अ--

और दो मजदूर हैं और--

लाइट वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है ।

बीच में लोहा डाल रहे हैं ।

ये गाड़ी है और इसका कलर ब्लैक है ।

और पिंक है और यहां सामने एक आदमी है ।

और उसके सर पर काले बाल है और एक आटू दिख रहा है उसके सामने एक लड़का नजर आ रहा है उसके बालों का रंग भी ब्लैक है।

उसने ग्रे कलर का ट्रैक सूट पहना है और उसके बालों पे टोपी है ।

कुछ सामान है और कुछ टाइल्स --

और इसके हाथ में कुछ है और इसके बालों का रंग काला है ।

ये एक पारक है और यहां पे--

और यहां पे इलेक्ट्रिक पोल्स है ।

ये सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं ।

और इसकी विंडोज भी वाइट ही है और वो जाली टाइप की है और बहुत सारे पेड़ है ।

और इन पे धूप खिली हुई है ।

एक मॉल है और यहां पे--

देख रहे हैं एक लड़के के पीछे बैग है।

उसने वाइट चेक शर्ट पहनी हुई है ।

एक दुकान है और बाहर एक गाड़ी दिख रही है ।

जिस पे वाइट से मुफ्ती फैक्ट्री लिखा हुआ है ।

और वहां पे एक सीडी है ।

ये सामने कोई शॉप्स दिखाई दे रही है ।

और इनके सामने एक बाइक है जो कि ब्लैक कलर है ।

और शॉप में चीजें है और एक शॉप में कुछ फ्रेम जैसा है।

और इनके हाथों में कुछ है सामने--

और एक लड़के के हाथ में ही पॉलीथीन है ।

और यहां पे एक टेबल है उस पे पावर कैटल है और उस पे--

एक वार्ड्रोब लगा हुआ है और उस पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं ।

और लाइट्स लगी हुई है और सामने एक टेबल है और दो चेयर्स हैं टेबल पर कुछ सामान है।

एक लेडी ने पर्पल कलर की--

और उसके बालों का रंग काला है।

और इन्होंने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के पैंट पहने हुए हैं ।

बैंक के ऊपर लाइट्स लगी हुई है ।

और इसके बालों का रंग ब्लैक है और ये--

और यहां पे एक टेबल है उस पे लैपटॉप है और पिक--

और कुछ लगा हुआ है कुछ बोर्ड सा--

अ मिरर लगाया गया है और यहां पे डोर है उस पे हैंडल है।

और सामने एक इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग भी नजर आ रही है व उसपे वाइट कलर का डोर है।

ये एक हॉल है और यहां पे ब्लू कलर का टेंट दिया गया है और यहां पे टेबल हैउस पे प्लेट्स रखे हुए हैं।

और यहां पे एक स्टेज बनाया गया है।

और एक टायर है और एक झूला है।

और यहां पे ए_सी लगा हुआ है और यहां पे एक खिड़की है जिसपे मिरर लगाया हुआ है।

ये कमरा है और यहां पे ब्राउन कलर की।

जो की डिजिटल है ब्लैक कलर का एक आदमी खड़ा है उसने पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पेहना हुआ है।

सर पे सफेद टोपी रखी हैऔर एक आदमी।

ये यहां पे गाय नजर आ रही है जो कि ब्राउन और ब्लैक है।

यह एक रेडीमेड शॉप है और यहां पे लड़कियों के लिए ड्रेसेस है।

और ट्रे है और यहां पे।

उसने वॉल पे अह एक।

ये सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और पैरों में वाइट कलर की शूज है उसके बालों का कलर .

और यहां पे चेयर्स लगे हुए हैंऔर उस पे।

और यहां पे एक फैन हैऔर।

एक आदमी नजर आ रहा हैऔर इसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है ब्लैक कलर का पेंट है।

ये वाइट कलर की गाड़ी है और अंदर।

ये एक शॉप हैऔर यहां पे।

यह सड़क है और यहां पे गाड़ियां है।